और पूरा टाइल्स मुजा एक लग ला सफ़ेद सफ़ेद पेंट करल ह। लाईट लागल ह। देखे मे बहुत सुन्दर लगात ह अदमी न कुल ह उ न --

आ एक ठो बिल्डिंग ह। बनत ह एक्खे अदमी एक्खे इंजीनियर ह जोन बतावत ह कि अइसे - अइसे बनी इ बिल्डिंगिया सफेदका वाला दुन्नौ हेलमेट लगइले हवें सफेदका वाला --